आसमान में तीन तार दिख रहा हैं।

और एक टावर दिख रहा है।

और आकाश में बादल घेरे हुए है।

और सामने में तीन चार चक्का गाड़ी लगी हुई है।

सामने में एक दुकान दिख रहा है।

और एक कीबोर्ड दिख रहा है जिसके बगल में एक--

और फील्ड में घास लगा हुआ है।

उसके बगल में एक प्रिंटर दिख रहा है।

जिसके बगल में एक दुकान है।

और उसके पीछे बहुत सारा पहाड़ दिख रहा है--

उसमें एक पोस्टर लगा हुआ है।

उसके बगल में एक उजला कलर का घर दि--

जिसमें एक पेड़ रोपा हुआ है।

और उसपे पौधा लगा हुआ है।

और एक पोस्टर लगा हुआ है।

और औरत सब लाइन से खड़ा है।

और एक पेड़ घर के अंदर उगा हुआ है।